यहां पर चार लाल सीवटर रखें हुए हैं जिनमें पीले फूल बने हैं।

सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है येलो टी शर्ट में।